वही रोड बनाई गई है यहां से लोग आते जाते होंगे और ये कॉलेज एक रेड एंड व्हाइट कलर में बनाया गया है और यहां पे रंग बिरंगे--

चार पांच बच्चे उधर मार झगड़ा कर रहे और उधर एक गोल गुंबद जैसा बनाया हुआ है।

आने की भी आइ_डी मिली जाती है और यहां पे लग रहा है कोई एक केक खाके कोई प्लेट छोड़ दिया है और अगर बगल में--

माता गंगा के अंदर ज ज पैसा प्रवाहित कर रहा हैं और--

यहां पे इस पिक्चर में दर्शाया है कि यहां पे काफी सारा भीड़ लगा हुआ है और डिफरेंट प्रकार की गाड़ियां लगी हुई हैं यहां पे दस पंद्रह गाड़ी हैं दो चार आदमी हैं और दो चार आदमी अंदर में जिम कर रहे हैं और ऊपर में एक --

रंग बिरंगे स्लाइड्स है इसमें यह ब्लू और येलो और ग्रीन जैसा कुछ दिख रहा है।

काफी सारे पेड़ निकले हुए हैं जो रंग बिरंगे पेड़ हैं और देखने में काफी--

यह एक कार वॉशिंग सेंटर सा लग रहा है और यहां पे एक कार है जो कि शायद से वॉश होने के लिए आई है और यहां पे एक बड़ा सा--

हवे का आनंद ले रहा हैं और आदमी जो हैं सो बहोत हि बड़ा गदहा हैं उस नदी के किनारे खड़ा हैं।